यह एक दुकान है | दुकान के अंदर लकड़ी का सेल्फ बना हुआ है | इसमें बहुत सारे बॉक्स पैक करके रखे गए हैं | यहां पे एक पोस्टर दिख रहा है सफेद कलर का जिसमे एक लड़का खड़ा हैं टी-शर्ट पहन करके | उसका टी-शर्ट व्हाइट एंड ब्लैक कलर का है।

यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा ब्रिज दिख रहा है | ब्रिज के नीचे एक प-पोस्टर लगा हुआ है स्वच्छ संरक्षण का पोस्टर लगा हुआ है | इसमें एक आदमी मास्क लेकर के मास्क लगाया हुआ खड़ा है और एक औरत खड़ी है साड़ी पहन करके और साइड में बहुत सारी साइकिल खड़ी हुई है और एक नाई की छोटी सी दुकान है।

यह एक हॉस्पिटल है | हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड रखे हुए हैं | बेड पे नीले कलर का चादर बिछाया गया है और एक अ डोलची रखी है | डोलची लाल कलर की है और हर ब-बेड के नीचे एक डस्टबिन रखा हुआ है | यहां पर दो डॉक्टर खड़े हुए हैं अ एक नर्स है।

ट्रिम कर रहा है साइड - साइड से उसके हेअर एक भगवान जी की यहाँ पे फोटो लगी सरस्वती माँ की फोटो है एक पार्टीश बना है उसके ऊपर बहुत सारा समान रखे हुए हैं यहाँ पे हेयर स्प्रे रखा है बहुत सारा समान रखा हुआ है यहाँ एक मिरर लगा हुआ हैं।

बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिख रही है | बिल्डिंग के उपर एक टेरेस है | टेरेस पर बहुत सारे कपडे सूखने के लिए डा -डाले गए हैं | यहां पर डारा लगा हुआ है | कलरफुल कपडे टांगे हुए हैं।

उसके सा उसके आगे ऊपर कैमरा लगा हुआ है और बहुत सारे छोटे-छोटे डब्बे रखे हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट रखा हुआ है एक फैन लगा हुआ है फैन चल रहा है एक आदमी अंदर खड़ा हुआ दिख रहा है।

यहां पे कन्स्ट्रक्शन का काम चालू है यहां पे घर बन रहा है यहां पे एक सीढ़ी खड़ी हुई नजर आ रही है छोटा-सा स्टैंड लकड़ी का स्टैंड बना हुआ है ऊपर आदमी पलस्तर करता हुआ नजर आ रहे है यहां पे एक आदमी फोन पे बात करते हुए दिख रहा है यहां पे लाल कलर की तीन कुर्सी रखी हैं।

यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं कुछ पेड़ सूखे हुए हैं एक पेड़ लगा है जिसमें बिल्कुल भी पत्ती नहीं है और किले के अंदर बाहर सब जगह से पेड़ नजर --

क्लासरूम है क्लासरूम में दो गेट लगा है एक गेट बंद है एक गेट खुला है और दो पीछे बहुत सारे पौधे लगे हैं लाल कलर के गमले रखे हुए हैं इसके अंदर पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पे पांच बच्चे बैठे हुए नजर आ रहें हैं। उनके पास बहुत ही कलरफुल पेपर है बड़े-बड़े पेपर है जो वह कुछ कट कर रहें हैं और कुछ बनाने बनाने की कोशिश कर रहें हैं। यहाँ पे उनके पास फेविकोल है गम है कलरफुल पेपर है।

यह हम पैर पोछने के लिए यूज करते हैं हमें यहाँ बाथरूम के बाहर ह घर के बाहर रखते हैं ताकि जो भी आए अपने अपने पैर पूछे यह बहोत ही अच्छी-अच्छी कलर के हैं बहोत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाए गए हैं सामने हमें एक गद्दा रखा हुआ दिख रहा है मैट्रेस जिसको बो --

यह एक बड़ा सा ऑफिस है। ऑफिस के अंदर एक नीले कलर का पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है। ऊपर पत्रा लगा है। ऊपर बहुत सारे फैन लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है। फैन चलता हुआ दिख रहा है लाइट भी जल रही है।

यहां पे बहुत सारे कुर्सी रखे गए है मेडल रखा हुआ है और यहां पे सब ग्रुप में बैठ करके बात कर रहे हैं यहां पे बहुत सारे डंबल हैं और एक्सरसाइज मशीन है यहां पर आज ही लगता है उद्घाटन हुआ है सब यहां पर जिम करने आते है यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ --

ये क्लासरूम है क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे हुए हैं सब ब्लू कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए हैं सब ने दो चोटी बंधाई है और कुछ लोगों ने मास्क लगाया है यहाँ पे दो खिड़की नजर आ रही है खिड़की बंद है खिड़की खुली है ऊपर फैन लगा हुआ है लाइट लगी हुई है।

और एक किले के नीचे बहुत सारी सीढ़ी लगी है सीढ़ी पर भी कलर किया बीच में सफेद है साइड साइड में महरून कलर किया गया है यहां पे से सीढ़ी पे से दो आदमी --

यह रोड पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है टेबल लगा कर के टेबल पे उसके बहुत सारी दवाई अलग-अलग प्रकार की दवाई है यहाँ पे एक आदमी पर्ची ले कर के खड़ा है डॉक्टर की टेबल पे आला है आले का डब्बा है आला उसके गले में है।